इस चित्र में हम देख सकते है की हमारे सामने बहुत सारी कारे हमको दिखाई दे--

यहा पर हमें एक बड़ा सा मुख्य दरवाजा दिखाई दे रहा है जिसका ह-ह- प्रवेश द्वार बहुत ही आकर्षक--

यहाँ पर एक रास्ता के किनारे का हिसा दिखाई दे रहा है जहाँ छोटासा बगीचा बनया गया है इस तरीके से बगीचे प्राय बड़े बड़े घरों या बंगलो के सामने हुआ करते है।